नीचे कि तरफ बोहत अच्छी डिज़ाइन बनाया गया है और यहां आगे नीचे की तरफ काफी सारे सुन्दर-सुन्दर फूल भी लगाये गए हैं और काफी अच्छी लाइट हैं।

जैसे की आप यहाँ पर देख सकते है हमे सामने की तरफ एक बहुत बड़ा शादी का बांकुएट हाल देखाई दे रहा है। यहाँ पर हमे काफी सारी सजावट दिखाइ दे रही है।

यहाँ पे यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर सरकारी दफ्तर दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर काफी सारे लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं।

जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर मुजफ्फर नगर का स्टेशन का ट्रैक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं।